यहाँ एक बहुत सुंदर गार्डन है और यहँ गार्डन अंबिकापुर का है मगर फुल नहीं बता सकता हु की अंधका पुर का है इस यहाँ हम लोग क्यूंकि कही बार जा चुके है और बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है। बड़ा --

में छाया आदमी आराम से बैठ सकते है और गार्डन को बढ़िया पत्तो से सजाया गया है और भीड़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर नई-नई डिजाइने चल रही है कोरोना काल में--

पहाड़ पर्वतों से हमें देखा जाए तो हम इस यहाँ पर छोटे दिखाई देंगे।

चर्च को बहुत सुन्दर सजाया गया है आप आकर देख भी सकते है और लाइटिंग असली मार्केटिंग की शोभा हैं ।

चिकित्सालय भी है यहाँ पर सारी चीजों की उपलब्धियां कराई जाती है और ताकि ये लोग मस्त --

यह एक खेत खालिहान का दृश्य दिखाई पड़ रहा हैं जहां लोग धान जुराते होंगे और धान का फसल यहाँ पर दिख रहा हैं दु चार--

और ये हमारे मुर्मू जी है।

यह स्टेज सो हो रहा है जैसा दिख रहा है कुर्सियाँ लगी हुई है और किसी का रिसेप्शन हो रहा है जैसे दिख रहा है यह कोई--

यह एक चर्च है और जिसमे फादर लोग पूजा कर रहे है प्रार्थना कर रहे है प्रभु इशू की--

पत्थर का गोदाम जैसा दिख रहा है जहाँ पत्थरो को फोड़ा जा रहा है और बोरी में भरा जा रहा है और ट्रको में इस इसको लोड किया जा रहा है यह कोई कोईला जैसा दिखाई दे रहा है जिसे --

नदी रहा है तो बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है चमक रहा है सब तरफ --

यहाँ फादर लोग भ्रंमड के लिए निकले हैं जैसे लग रहा हैं चर्च के बहार में और फादर है।